यहाँ पे बहुत सारे ग्लास है जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखे हुए हैं।

यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस - ग्लासेस है एक साथ।

यहां एक नदी है और नदी पे ए बहुत सारे घास लगे हुए हैं और घास के बीच मे एक बगुला खड़ा है।

यह एक बहुत बड़ी नदी है और नदी के आजू बाजू बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और कुछ जगह खाली भी है।

यह एक स्टेशन जैसा लग रहा है यहां पर बहुत सारी सीढ़ियां हैं जो ऊपर की तरफ जा रही है और एक दो साइड्स है एक राइट साइड है।

एक बस अ राईट सी सीधी जा रही है और एक बस उसके अपोजिट में आ रही है।

जो शायद कोई गेम खेल रहे हैं और उसके साइड में एक सूरज है जिसकी किरणें मैदान में पड़ रही है।

यहां पे कुछ स्टेच्यु है और उनको नए कपड़े पहनाए है गये है और यह एक शॉप जैसा नजर-नजर आ रहा है।

और बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई है और चीजें रखी हुई है।